बोर्ड लगा हुआ है। उसपे आयुर्वेद मेडिकेयर लिखा हुआ है। गेटी डॉक्टर संभलपुर में हैं।

सामने में स्टेज है और बहोत सारे चेयर्स है उसमें बहोत सारे लोग बैठे हैं और यह बहोत ही सुंदर लाइट से भी सजी हुई है।

ये एक बाइक शोरूम है यहां पे बहोत सारी बाइक खड़ी हुई है रेड एंड ब्लैक एंड ब्लैक एंड रेड कलर --

दृश्य है यहां पर एक ब्लू कलर की साइकिल खड़ी हुई है स्पोर्ट्स साइकिल ।

ये एक ज्वेलरी शाप है यहां पर एक टेबल भी रखा हुआ है और बहुत सारे चेयर्स भी रख हुए हैं।

हरी मिर्च बिछी हुई है और उसके ही बगल में एक ब्लू कलर की पेटी रखी हुई है जिसके अंदर बहोत सारे आलू है।

और ऊपर में बहोत सारे पैम्पलेट भी लग रहे है और मशीन के जस्ट ऊपर रेलिंग में बहोत सारे कपड़े लटक रहे है।

जहां पर रेड कलर की चेयर रखी हुई है और ब्लैक कलर की गेट लगी हुई है जिसके ऊपर ताला भी लगा हुआ है।

ब्लैक कलर की बहोत सारी लोहे की रॉड भी बाहर लगी हुई है।

और एक डस्टबिन ब्लैक कलर का रखा हुआ है और इसके पेम्प्लेटल में वित्तीय इंस्टीट्यूट लि--

यह एक दुकान है जहां पर चूड़ियां मिलती है और यहां बहोत सारी औरते चूड़ियां लेने आ रखी हैं।

और यहां से एक स्कूटी क्रॉस भी कर रही हैं और यह बहोत ही सुंदर लाइट से सजाया गया है।

यह एक क्लास रूम का दृश्य है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं और एक टीचर भी खड़ा हुआ है।